जो सफेद रंग के सफेद-नीले आसमान है। पेड़-पौधे हैं। हरे पत्ती है। भूरे रंग की मिट्टी है। सामने एक घर बना है। जो सफेद रंग के बड़े-बड़े पेड़ है। हरी पत्तियाँ है।